चिए मे हम देख सकते हे के बासा गेट है और दो गेट है और गेट के सामने दो बकरी के बच्चे है और अंदर तीन लोग खड़े हुए है।

और बहुत सारे टेबल चेयर रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगाए गए है ऐ.सी और सी.सी.टी.व्ही और लाइट बी चमक रही है।

यह चित्र में हम एक काला टेबल देख सकते हैं जहां के एक बोतल स्प्रे की बोतल रखे हुए हैं और बहुत से बॉक्स रखे हुए हैं और--